ऐ गेट सब दिख रहा इसमें ल इसमें लकड़ी का गेट दिख रहा है इसमें रेड कलर से पेंट है और बरांदा है इसमें--

चादर बिछाया हुआ दिख रहा है जो वाइट कलर का दिख रहा है।

यहाँ प अअअ कोई पार्टी चल रहा है जिसमें लाइट बढ़ते हुए दिख रहा है ब फटाका फूटते हुए दिख रहा है डी --

चारों ओर से लोहा से घेरा हुआ दिख रहा है सार्फी लाइट बढ़ते हुए दिख रहा है बीच में दुल्हनियाँ सब खड़ा हुई है।

यहां पर एक गो घर दिख रहा है दूर दूर तक इसमें मैदान है जिसमें--

इसमें मीठ दिख रहा है सलाद दिख रहा है खीरा दिख रहा है।

घर ए_सी दिख रहा है बॉल दिख रहा है बढ़ता हुआ --

आए हाए वो घर है जो वाइट कलर से पेंटिंग हुआ है यहाँ पर शीशा दिख रहा है पौधा घर के आगे दिख रहा --

लोहा दिख रहा है टीना दिख रहा है यहाँ प --

ये गुलाबी कलर से पेंटिंग यहां पे पौधा थोड़ा सा दिख रहा है तार का--

इसमें पार्टी हो रहा है और इसमेंएएए फुकना सा लगा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है एस जीवन किरन --

कोचिंग इनंनं लिखा हुआ दिख रहा है इस पर आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

आया हुआ दिख रहा है अब पानी सब दिख रहा है अअहरर ब्लू कलर अहा वाइट कलर यहाँ पर --

मीटू सी जू कची तोली लिखा हुआ है वा फूल लगा हुआ दिख रहा है वाइट कलर का चा --

पोकती अ स्टेज बनाया हुआ दिख रहा है जो रेड कलर कपड़ा बिछाया हुआ दिख रहा है दोनों तरफ --

यहां प गिट्टी दिख रहा है अधिक यहां प फोरने वाला मशीन है ये की इधर से इधर जाने वाला है सीरही दिख रहा है लोहा दिख रहा है।

ये यहाँ पर ट्रेन आने-जाने वाला दिख रहा है उसका लोहा दिख रहा है यहाँ पर तार का केबल दिख रहा है घर दिख रहा है।

दिख रहा है पुत्तार का केबल दिख रहा है व पोल दिख रहा है आपको पौधा दिख रहा है।

यहां प अगरबत्ती जलते हुए दिख रहा है मोमबत्ती से अधिक अ जलते हुए दिख रहा--

दिख रहा है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है प यहाँ प --

और घास का डिज़ाइन बनाया हुआ दिख रहा है बरा सा बिल्डिंग है रेड कलर और वाइट कलर से पेंटिंग हुआ है उसके ऊपर बॉल सब लगा हुआ दिख रहा है।

यह झड़ना है उसमें से पानी गिरते हुए दिख रहा है आदमी सब उसमें नहाते हुए दिख रहा है बड़ा बड़ा पत्थर दिख रहा--

ये आसमान है जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसमें बादल वाइट कलर का छाया हुआ दिख रहा है।

आदमी सब जाते हुए दिख रहा है पौधा सब अधि दिख रहा है अधिक मात्रा में दूर दूर तक पहाड़ बहुत सारा दिख रहा --

यहां पर घास सब दिख रहा है पत्थर दिख रहा है।

यहाँ पर पूल दिख रहा है बड़का बरका आआ अ प पुल पर लोहा लगा हुआ दिख रहा है।

इसमें सूरज दिख रहा है जो रेड कलर का बढ़ता हुआ दिख रहा है आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का दिख रहा है चार चक्का दिख रहा है।

तार का केबल दिख रहा है पोस्टर सब दिख रहा है आदमी सब --